यह तालाब के आसपास मैं पेड़ो को देख पा रहा हूँ और जो सूरज ढ़लने का प्रतिबिंब है वो तालाब के पानी में एकदम साफ़ सुथरा देखा जा सकता है और ये सीन बहोत अच्छा है।

मेरे सामने पिक्चर में एक चर्च है और चर्च का जो आर्किटेक थीम है वो लाल कलर का है ।

सामने तस्वीर में मुझे बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं। जिसमें मुझे लाल कलर का अनार और संतरे केले --

और नीले कलर का थीम दिखाई दे रहा है एक चार्जिंग बोर्ड भी दिखाई दे रहा है कुछ कुर्सियाँ भी मुझे नजर आ रही है और सामने एक हेड ओफिस --

और ये टेबल पर प्लेट पर रखे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है ये मेथी के पराठे हैं। जिनका तिकोना आकार है।

सामने लेक के ऊपर दिखाई दे रहा है। सफ़ेद कलर के बादल है लेक पानी नीला है और छोटी- छोटी -सी रेंजेस है जोकि पहाड़ियाँ है छोटी-छोटी- सी और ऊपर सफेद कलर के बादल घुमड़ते हुए हैं।

यात्री है। सामने मुझे एमेनिटीज दिखाई दे रहा है। एमेनिटीज के ऊपर एक पीले कलर की टंकी है और राईट हैन्ड साइड में वेटिंग रूम भी है।